इसके ऊपरी हिस्से में एक पतली सी सिरोरेखा बनी हुई है।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

बाहर की तरफ लोहे की बैरिकेटिंग की गई दिखाई दे रही है तथा इसके ऊपर से जाने का रास्ता है।

इसमें एक बड़ा चैनल लगा हुआ है तथा शीशे का गेट लगा है।

इस फोटो में एक ब बड़ा हर हरा-भरा घास का मैदान दिखाई दे रहा है।

पिच पर एक बैट्समैन खेल रहा है उसके हाथ में बैट है।

उसके पीछे काफी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

एक व्यक्ति खड़ा है उसने पैरों में चप्पलें पहन रखी है।

जिसके ऊपर एक कॉफी वाली मशीन रखी हुई है।

इसमें कई सारी फाइलें बंडलों में बंधी हुई हैं।

एक फर्नीचर की दुकान है इसमें कुछ कुर्सियां रखी हुई है।